सामने चार डेस्कटॉप दिख रहे है।

फोटो में एक लड़की के बाल दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो यह फोटो संभवत किसी रेस्टोरेंट की है।

यहां पर एक प्लेट है जो कि सफेद रंग का है।

पीछे कुछ गिलास भी दिख रहे हैं स्टील के।

ये बहुत सारे टेबल चेयर्स लगे हुए हैं एक टेबल पर एक कपल बैठा हुआ है।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

सामने बाइक से उतरता हुआ एक आदमी भी दिख रहा है आदमी ने पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है।

इस फोटो में एक अंडरग्राउंड सेक्शन दिखाया गया है।

यहां पे बहुत सारे टेबल और सोफास दिख रहे हैं।

दुकान का शटर पीले रंग का है।

काउंटर में बहुत सारे बिस्किट जैसे मेरीगोल्ड ओरियो वगैरा रखें हैं।

काफी सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नदी के पानी का रंग पूरा कीचड़ कीचड़ सा है।

इसमें बीच में एक आइलैंड जैसे स्ट्रक्चर भी देख रहा है उसमें कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे में पहाड़ और बादल दिख रहे हैं।

बीच टेबल पे टिशू पेपर रखा हुआ है दोनों साइड कप्स रखे हुए--

आसपास खिड़कियों पे स्काई ब्लू कलर की कर्टेन्स लगे हुए हैं सीलिंग व्हाइट कलर की है।

ऊपर बहुत सुंदर सा आसमान भी दिख रहा है।

सामने एक रोड दिख रही है उधर से आती हुई एक कार दिख रही है।

स्टील का उसमें बड़े बड़े औजार लगे हुए है।

उसके बगल में एक शटर वाली दुकान दिख रही है जिसमें बहोत सारे रैक्स दिख रहे हैं।

आदमी ने टोपी भी लगा रखी है।

इसमें ऊपर पे एक येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में एक बहुत बड़ा ओपन फील्ड दिख रहा है।

फील्ड में घास जमी हुई है सामने एक पीला रंग का घर दिख रहा है और उसके बगल में एक सफेद रंग का घर दिख रहा है।

ऊपर काले बादल छाए हुए हैं।

आस पास जो सीलिंग है वो ब्लू कलर की है।